काफी सारे घर दिखाई दे रहे हैं एक चेयर भी रखी हुई दिखाई दे रही है।

यह दृश्य हमें एक लाइब्रेरी का दिख रहा है जहाँ हमें चार पाँच कंप्युटर दिखाई दे रहे हैं काफी सारे कुर्सी और टेबल दिखाई दे रहें है।

यह दृश्य एक रूम का दिखाई दे रहा है जहां एक बेड दिखाई दे रहा है जिस पर वाइट कलर की चादर बिछी--

हमे यहां एक रोड दिखाई दे रही है जिस-जहां हमे दो कार दिखाई दे रही है एक व्हाइट रंग की और एक येलो रंग की तथा --

तथा हैंड वॉश रखे हुए दिखाई दे रहे है मैगी वगेरा दिखाई दे रही है।

यह दृश्य नाइट रात का दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक पेट्रोल पंप दिखाई दे रहा है यहां दो व्यक्ति खड़े हुए दिखाई दे रहे है तथा यहां ला व्हाइट कलर की लाइटिंग भी दिखाई दे रही है तथा साफ मैदान दिखाई दे रहा है।

यहाँ एक तबेला दिखाई दे रहा है जहां दो भैंस बंधी हुई दिखाई दे रही हैं।